c और c ++ में functions पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
function function क्या है
function function का syntax
return statement का महत्व
हम इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से करेंगे
हम कुछ सामान्य errors और उनके समाधानों को भी देखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए
मैं ubuntu operating system version 1110 और
gcc और g ++ compiler version 461 का उपयोग कर रहा हूँ
functions के परिचय के साथ शुरू करते हैं
function एक विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने के लिए एक आत्मनिर्भर program है
प्रत्येक program में एक या अधिक functions होते हैं
एक बार निष्पादित होने पर control पुनः वहीं लौट जाएगा जहाँ से इसे accessed किया गया था
function के लिए syntax देखें
rettype उस data के प्रकार को परिभाषित करता है जो function से प्राप्त होता है
fun _ name function का name परिभाषित करता है
parameters variable के नामों और उनके प्रकारों की सूची है
हम एक खाली parameter सूची निर्दिष्ट कर सकते हैं
ये बिना arguments वाले functions कहलाते हैं
और ये arguments वाले functions कहलाते हैं
void का उपयोग करके एक program देखें
मैंने पहले ही editor पर program टाइप कर लिया है
अतः मैं इसे खोलूँगा
ध्यान दें कि हमारा file function है
और मैंने extentsion c के साथ file सेव की है
मैं code समझाता हूँ
यह हमारी header file है
किसी भी function का उपयोग करने से पहले इसे परिभाषित किया जाना चाहिए
यहाँ हमने add नामक एक function परिभाषित किया है
ध्यान दें कि add function arguments रहित है
और return प्रकार void है
यहाँ दो प्रकार के functions हैं
userdefined जो कि हमारा add function है और
predefined जो कि printf और main function है
यहाँ हमने a और b को 2 और 3 values देते हुए आरम्भ किया है
यहाँ हमने variable c घोषित की है
फिर हमa और b की values को जोड़ते हैं
परिणाम c में संचित होता है
फिर हम परिणाम को print करते हैं
यह हमारा main function है
यहाँ हम add function दर्शाते हैं
एडिशन operation संचालित होगा और परिणाम printed हो जाएगा
अब save पर click करें
program को निष्पादित करें
कृपया ctrl alt और t कीज़ एक साथ दबाकर terminal window खोलें
कंपाइल करने के लिए type करें gcc function dot c hyphen o fun
निष्पादित करने के लिए type करें/fun dot slash fun
output प्रदर्शित होता है sum of a and b is 5
अब अपने program पर वापस आएँ
functions में विशेष identifiers हैं जो parameters या arguments कहलाते हैं
अब arguments के साथ वही उदाहरण देखें
मैं यहाँ कुछ चीजें बदलूंगा
type करें int add int a int b
यहाँ हमने add function घोषित किया है
int a और int b function add के arguments हैं
इसे डिलीट करें
यहाँ a और b को शुरू करने की आवश्यकता नहीं है
printf statement को डिलीट करें
type करें int main
यहाँ एक variable sum निर्धारित करें
type करें int sum
फिर type करें sum = add 54;
यहाँ हम add function दर्शाते हैं
फिर हम 5 और 4 के रूप में parameters pass करते हैं
5 a में संचित होगा और 4 b में संचित होगा
addition किया जायेगा
परिणाम print करें
टाइप करें
printfsum is %d\nsum;
इसे डिलीट करें क्योंकि हमने function पहले ही दर्शाया है
type करें return 0;
nonvoid function में return statement का उपयोग किया जाना चाहिए जो एक value return करता है
save पर click करें
program को निष्पादित करें
terminal पर वापस आएँ
पहले की तरह program को कंपाइल करें
निष्पादित करें
output इस तरह प्रदर्शित होता है sum is 9
अब देखते हैं कि c ++ में वही program कैसे निष्पादित करें
अपने program पर वापस आएँ
यहाँ कुछ चीजें बदलें
पहले shift ctrl और s कीज़ एक साथ दबाएँ
अब file को cpp extension के साथ सेव करें
save पर click करें
पहले हम हेडर फाइल को iostream में बदलेंगे
हम यहाँ using statement को शामिल करेंगे
c ++ में function विवरण समान है
इसलिए यहाँ कुछ भी बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है
अब printf statement को cout statement से बदलें जैसे हम c ++ में line को printf करने के लिए cout <<function का उपयोग करते हैं
हमें यहाँ format specifier और \n की आवश्यकता नहीं है
comma डिलीट करें
अब दो opening angle brackets type करें
sum के बाद पुनः दो opening angle brackets type करें
और double quotes double कॉमा में backslash nटाइप करें
इस closing bracket को डिलीट करें
अब save पर click करें
program को कंपाइल करें
अपने terminal पर वापस आएँ
type करें g ++ function cppo fun1
यहाँ हमारे पास fun1 है क्योंकि हम output file fun को overwrite नहीं करना चाहते हैं
enter दबाएँ
type करें/fun1
output प्रदर्शित होता है : sum is 9
अब हम कुछ सामान्य errors देखते हैं जो आगे आ सकती हैं
मान लें कि हम 4 के स्थान पर x type करते हैं
मैं बाकी code को जैसा है वैसा ही code दूंगा
save पर click करें
program को कंपाइल करें
हम line न 10 पर एक error देखते हैं
इस scope में x निर्दिष्ट नहीं किया गया था
यह इसलिए क्योंकि x एक character variable variable है
यह कहीं भी निर्दिष्ट नहीं है
और हमारे add function में एक argument के रूप में integer variable variable होता है
इसलिए return type return प्रकार और return value return value में अंतर है
अब अपने program पर आएँ
अब error को fix करें
line न 10 पर 4 type करें
save पर click करें
फिर से निष्पादित करें
prompt को clear करें
पहले की तरह program कंपाइल करें
हाँ! यह कार्य कर रहा है
अब हम एक दूसरी सामान्य error देखेंगे जो आ सकती है
मानिए कि यहाँ हम केवल एक parameter pass करते हैं
4 डिलीट करें
save पर click करें
अपने terminal पर वापस आएँ
कंपाइल करें line नं 10 पर हम एक error देखते हैं
too few arguments to function int add int int
अपने program पर वापस आएँ
आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास दो parameters हैं
int a और int b
और यहाँ हम केवल एक parameter पास कर रहे हैं
इसलिए यह error दे रहा है
error को fix करें
4 type करें
save पर click करें
terminal पर वापस आएँ
फिर से निष्पादित करें
हाँ यह कार्य कर रहा है!
अब अपनी slides पर वापस आएँ
संक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा
function function का syntax
बिना arguments वाले function:
जैसे; void add
arguments वाले function:
जैसे; int add int a और int b
एक नियतकार्य के रूप में एक संख्या के वर्ग की गणना करने के लिए एक program लिखें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
यदि आपके पास अच्छी bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके भी देख सकते हैं
spoken tutorial project team
spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है
उन्हें प्रमाणपत्र भी देते है जो online test pass करते हैं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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद